पर हमें फॅमिली ही दे रहा है। किस मैं सामने हमें एक टीवी देखाई। और हमने देखा है तू तू मैं कुछ कोर्स किया।

यहाँ पर हमें दो उछेउछे पहाड़ दिखाई दे रहे है और एक पतली सी रस्ता भी दिखाई दे रहे है

एक लकड़ी में एक बल्ब भी लगा हुआ है और एक मोटर साइकिल--

यहाँ एक अकेला दिखा रहा है। फॅमिली सुंदर देख फॅर खोला देखा। यहाँ पर।

यह पर हमें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है